दृश्य में बहौत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सभी लोग खड़े है।

इस समय बच्चा को खेलने वाला झूला रखा हुआ है।

यह ब्लू कलर का रेड कलर का है और दीवार को वाइट कलर से पेंट किया गया है।

दृश्य मे बहुत सारे कुर्सी और टेबल दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

और ऊपर में लाइट जल रहा है।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

और बगल मे घर भी दिखाई दे रहा है।

टॉयलेट करने वाला रखा हुआ है।

दृश्य में बहोत सारा किताब दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में लाइट जल रहा है सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगाया हुआ है।

ढाबा का दृश्य है जिसमें पोस्टर लगाया हुआ है।

करकट कसा हुआ है एक डब्बा भी दिखाई दे रहा है।

और पोस्टर भी चिपकाया हुआ है और बहोत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

और एक पंखा भी रखा हुआ है और बहुत सारा लाइट जल रहा है।

और अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं।

और शीशा भी दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे पोस्टर भी लगाया हुआ है नीचे बहोत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है और बहुत सारा पर्दा भी लगाया हुआ है।

जो हरा कलर का है और पैंप भी बिछाया गया है।

एक गाड़ी दिखाई दे रहा है जो काला कलर का है।

और पेड़ भी दिखाई दे रहा है और पोल भी दिखाई दे रहा है।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

और साइकल भी लगाया हुआ है और एक बाइक भी लगाया हुआ है और पीछे घर भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे घर भी दिखाई दे रहा घर के खिड़की भी दिखाई दे रहा--

और बहुत सारा लाइट भी जल रहा है।

दृश्य में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में बहुत सारा डिजाइन बनाया गया है।

और नीचे बहोत सारा कार्टून भी रखा हुआ है।

और बहोत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है ऊपर में बादल भी दिखाई दे रहा है तार भी खींचा हुआ है।